जिसका नाम है बुक वर्ल्ड ओल्ड एंड न्यू सेल एंड परचेस --

बुक पुरानी बेच भी सकते हो और नया खरीद भी सकते हैं।

यहां डिस्काउंट भी लगा हुआ है बीस पर्सेन्ट ओर अस्सी पर्सेन्ट का यहां पे बाइक लगी हुई है।

नहा रहे हैं बस एक ही नाव है।

ये लोग मछुआरे हो सकते हैं।

बाहर ग्राउंड में चेयर्स लगे हुए हैं।

पेड़ पौधे साइड से लगे हुए हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है मट्टी गीली है।

यह एक घर है बहुत बड़ा।

दीवार की बाउन्ड्री पे दो बोड़ा --

र्रखे हैं कारपेट रखे हुए हैं।

कार पेट्रोल भराने के लिए लगी हुई है।

जिसमें एक व्यक्ति --

इस जो रेड कलर की चेयर है ब्राउन कलर का टेबल है एक बड़ा सा टेबल पे दो प्लेट है।

यहां पे गमले भी मिलते हैं।

पटना सिटी में है मिस्टर पंप भ --

ओर पैसा काउंटर पे दे सकते हैं।

बैक टोपी और चश्मा लगाकर --

शाम का समय है वह सूरत की तरफ देखकर फोटो --

हम लोग रेस्टोरेंट में इसे खाते हैं।

यहां रिसेप्शन पार्टिंग होने वाली है।

जिसने बहुत सी कार --

बोर्ड पर बैंक एसएससी की --

यह एक कॉलेज है जिसका नाम सीमेज कॉलेज है।

यहां पे कॉलेज के बाहर एक गार्ड है।

इसके चारों तरफ घर है पेड़ है।

इसमें एक वाइट शर्ट में है और एक --

पैसा निकाल रही है।

गेट अंदर बोहोत से --

बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यह एक ऑफिस है जिसमें चार चेयर हैं।

इंटरव्यू के लिए यहां एक पेप्सी की फ्रिज है छोटा सा--

यहाँ चार फ्लोर है यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ दुकानें हैं बाहर बहुत सी बाइके पार्किंग में लगी है ठेला है।

अंदर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

जिसमें से सारी काम होती है।

दो लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं।

छोटा सा स्टेडियम छोटा सा डांस क्लास है।

जिसमें -- टीचर बोर्ड पे बच्चों को मैथ्स सॉल्व --

लड़के दिख रहे हैं पढ़ाई करते हुए--

एक बच्चा हिरण है और एक उसकी मां है।

यह एक रेस्तराउं है द फूड डिजाइल रेस्तराउं --

यहां पे दो चेयर है।

एक समुद्र है जिसमें एक नाव पे दो नावक --

ब्लू शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हैं।

जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

पानी के बीच में एक पोल है लाइन का--

रोड पे ब्लैक स्कर्पियो है व्हाइट कार है।

और कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है इस पिक्चर में और --

जिसके बाहर कुछ लोग वेट कर रहे है।

भवन के पीछे एक बड़ा सा परे है।

एक लड़का फोन कर रहा है एक आदमी फोन देख रहा है हेलमेट चेयर पे रखा हुआ है।

जिसमें एक नेता स्टेज पे खरा है।

बाकी लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं।

पेट्रोल बढ़वाने के लिए --

यह एक सुनशान इंडिया है।

जहां ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है।

बीज को बनाने में मदद हो रहा है।

एक मॉल है जिसमें बच्चे बड़े लड़के --

तो गोल्डन रंग की है उसने हार माला भी पहने हुए हैं।

तरह तरह के पेर - पोधे छोटे छोटे --

जिसमें जेंस की सर्थ --

आदमी उतने नहीं है यहां ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं--

बाकी लोग वहां अंडे सामान खरीद रहे हैं बहुत भीड़ है दुकान में--